पहाड़ से झरना भी बह रहा है जो--

जहां बहोत सारे टीचर और ईस्टूडेंट भी दिख--

साइकल की दुकान दिखाई दे रही--

है जिसका नाम हकीमी साइकिल सर्विस है।

इसमें मुझे एक दुकान दिख रही है।

एक बहोत ही प्यारा मंदिर दिख रहा--

इस इमेज में मुझे कई सारे बच्चे डांस --

यह देखने में बहुत ही ज्यादा--

बड़ी नदी दिख रही है जो--